ऊपर में बहुत सारे डब्बे डब्बे करके रॉड लगाए हुए हैं।

हरे टाइप में है।

का कलर ग्रीन हैं।

यह दृश्य एक गार्डेन का है।

जो की डांस कर रही हैं।

कार में बहुत सारे फूल पत्ती से सजावट किए हुए हैं।

घर में बहुत सारे लाइट्स --

पीछे में बहुत सारे चेयर लगाए--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

पीछे में बहुत सारे पत्थर भी नजर आ--

ये एक नदी का है।

जिसके अंदर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं।

सामने में एक हारमोनियम रखा है।

यह दृश्य एक छठ घाट का है।

गेट का कलर ब्लैक है।

एक कार का कलर ब्लैक व्हाइट रेड है।

दीवाल में एक बोर्ड है जिसका कलर व्हाइट है।

घर का कलर व्हाइट और यलो है।

नीचे से दोनों साइड सीढ़ी गई हुई है।

सामने में दो आदमी नजर आ रहे हैं।

यहां पे सामने में एक सोफा लगाया हुआ है जिसका कलर पर्पल वाइट और गोल्डन है।

यह दृश्य एक ज्वेलरी शॉप का है।

जिसमें की येलो कलर से खुशी स्टीकर पैलेस लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

सामने वाले दीवाल का कलर वाइट नजर आ रहा है।

दृश्य एक चर्च का है।

यहां पे सामने में एक फैन नजर आ रहा है।

रूम की दीवाल का कलर ग्रीन नजर आ रहा है।

इसमें बहोत सारे फर्नीचर्स के सामान रखे--

यहां पे सामने में तीन टेबल नजर आ रहे हैं।

जिसमें कि एच_डी_एफ_सी बैंक --